यह दुकान बहोत ही साफ सुंदर दिखाई दे रही है तथा सुंदर सुशोभित हो रही है। ये एक दुकान का सीन --

इसमें एक लाल कलर काएक जामुनी कलर का एक गुरु गुलाबी कलर का है तथा एक ग्रे कलर का है तथा जिसमें गुल --

यह एक सुंदर स्विमिंग पूल का चित्र दिखाई दे रहा है तथा यह बहोत ही सुंदर और साफ से सजे दिखाई दे रहा है तथा इसके स्विमिंग पूल के अंदर --

सुंदर से सुंदर आकृति के रूप में दिखाया जा रहा है। ये एक मैंदान के बीच में व्यवस्थित किया हुआ है एक फाउंट --

वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित काम किए जाते हैं तथा यहाँ पर --

एक ट्रांसवाटर भी रखा हुआ है ट्रांसफार्मर के बाहर में एक स्थिति वह देख रहा है तथा बिजली तथा पानी की व्यवस्था का नियंत्रण निर्माण कर रहा है।

यह एक चर्च का सामूहिक चित्रण है जोकि बहुत ही सुंदर प्रतिभाशाली रूप से सुसर्जित होकर --

यह एक प्राचीन इमारत दिखाई दे रही है जो प्राचीन युगों की बनी हुई है।